सामने एक मोटर साइकिल खड़ी है एक हरे कलर का बोर्ड जो है जो झुका हुआ दिख रहा है बड़ा सा पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है कोई इंसान वह पी नजर नहीं आ रहे है।

रेल की उसकी ईमारत दिख रही है उसकी बड़ी बड़ी खिड़किया दिख रही है नीले कलर का बोर्ड दिख रहा है कंपाउंड की दीवार दिख रही है और ईटा वीटा के जैसा दिख रहा है दिख रहा है।

अंदर भी कुछ इमारत दिख रही है हरे हरे कलर की बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है।

यहां पर एक शॉप दिख रहा है उसके पीछे पीली पीली शटर दिख रही है दिख रही है दे बाहर की तरफ भी --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

यहां पे एक गार्डन दिख रहा है वह पे आने जाने के लिए जगह दिख रही है बेठने के बाग दिख रहा है एक आदमी उदर दूर खड़ा दिख रहा है वह पे पुतला दिख रहा है कुछ लाइट के पोल दिख रहे है बड़े-बड़े पैड दिख रहे है।

और बड़ा सा पैड दिख रहा है बहार की तरफ बेठने के लिए एक बाग दिख रहा है और वह पे एक मोटरसाइकिल भी खड़ी दिख रही है दिन का समय दिख रहा है वो जो दिवारे है उस इमारत की गुलाबी कलर की दिख रही है वह पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहे है।

सामने से एक सफेद कलर की बस आती हुई नजर आ रही है और वहां पे बड़ी बड़ी इमारते कुछ दिख रही है सफेद कलर की भी इमारत दिख रही है।

और उसके बगल मे कुछ पेट्रोल-पम्प रहे है कुछ बड़ी इमारत भी दिख रही है पीली कलर की दिन का समय संध्या का दिख रहा है।

बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है यहाँ बहुत सारी मिटटी है और पे वहाँ कुछ लोग लड़के खेलते हुए नजर आ रहे है। संध्या का समय दिख रहा है।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

और बहार की तरफ सा पोल दिख रहा है सामने से आने जाने के लिए रास्ता दिख रहा है ऊपर वहां पर चड़ने के लिये सीढ़िया दिख रही है मंदिर मै जाने की तरफ --